यहाँ पे बहुत सारे दो तीन टेबले रखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सोफा है जो की काले कलर का है। वो लगा है गेट लगा है

यहाँ बहुत सारे बल्ब लगे हुए है यहाँ कांच के टेबुल के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा है बहुत सारे न्यूज पेपर रखे हुए है यहाँ एक साइड मे गुलाबी कलर का सोफ़ा रखा हुआ है बाहर गमले रखे है।

ये एक रोड है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे एक लोहे के खम्बे हैं जो कि जिनपे लाइटे जली हुई हैं यहाँ पे एक बस जा रही है और एक उस साइड एक बस आ रही है।

एक गाड़ी लाल कलर की है लोहे की जीने लगे हुए हैं और बाहर पानी गिर रहा है और यह शेड है लगे हुए हैं और वह जो पाइप है वो लाल कलर के हैं।